इस चित्र मे सड़क दिखाई दे रही है दुकानों के शटर दिखाई दे रहे है।

सामने की ओर बोहत बड़ा सा पोस्टर दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

यहां एक थ्री सेड बना दिख दिखाई दे रहा है।

व्यक्ति दिखाई दे रहे है।